हिरण देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और बगल-बगल में पेड़ है।

और उसके बगल में लाइट दिख रहा है बहुत अच्छा से सजाया गया है।

बगल में एच_सी_एल लिखा है बहुत अच्छी बिल्डिंग है।

यह एक कपड़ा का ऑफिस है और यहां पर दो बड़ी चेयर है और एक बगल में छोटी चेयर है।

और शटर भी है और शटर का ऊपरी हिस्सा में एक फूल का माला लगा हुआ है।

का दुकान है जो की बंद है।

जो की बहोत पुराना दिखने में लग रहा हैं।

ये बगल में एक चॉल है जो कि ब्लैक जैसा टीन का है।

यह एक सोनी कंपनी का शोरूम है।

क्योंकि बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

और लाल कलर में है।

और अपने सब कोई बजा रहे है पीछे बहुत बड़ा सा मन्दिर जैसा सजाया हुआ हैं।